महात्मा बुद्ध जी की पेंटिंग लगी है।

एक टेबल पर कंप्यूटर भी रखा हुआ है।

यहां पर नीचे हैंगर में भी कपड़े लटका रखे हैं।

लकड़ी के टेबल पर रखी हैं।

यहां बहोत सारी कुर्सियां रखी है।

कुर्सियों के उस तरफ सफेद दीवार भी है।

यहां सामने एक आदमी भी खड़ा हैं।

यह दिख रहा हैं कि यह एक दुकान हैं।

और ऊपर मिठाई के डब्बे भी रखे हुए हैं।

बहोत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं।

जो की संतरी रंग के कपड़े के ऊपर रखी हुईं हैं।

जो की क्रीम रंग की है।

सामने देखने पर पेड़ पौधे और छोटी छोटी घास भी है।

इसमें हमें यह दिखाई दे रहा है कि--

हमें यह दिख रहा है कि यह एक टैंक है।

और ऊपर लाइटें जल रही हैं।